यह एक अस्पताल है यहां पर कुछ ऐसीयां लगी हुई हैं और बाहर कुछ मरीज बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं यहां पर चल क्या रहा है।

कोई यहां पर बहुत अच्छी साफ सफाई भी की हुई है बहुत अच्छी तरीके से यहां पर टाइल भी लगी हुई है।

फोन की मैम ने पीले कलर की साड़ी पहन रखी हुई है और मास्क लगाया हुआ है जो कि बहुत से तगड़ा सौदा लग रहा है।

और जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे है यहां पर कुछ चेयर सी भी लगी हुई है शीशे भी लगे हुए है जो देखने में बहोत अच्छे लग रहे है।

और नीचे कुछ रस भी छाया हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी यहां पर डेकोरेशन की हुई है.

और सामने कुछ साइड में कुत्ते पाले दिखाई दे रहे हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

लाल कलर की टेबल रखी हुई हैं दो चेयर रखी हुए है देखना बहोत अच्छी लग रही हैं और यहां पर बहुत अच्छा काम भी चल रहा है जी देखनेमें ओर भी अच्छा--

यहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है बहुत अच्छा यहां पर प्रोग्राम भी बनाया हुआ है और यहां पर चारों तरफ बहुत अच्छी --

और केले भी रखे हुए है जो की बहोत ही अच्छे केले दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे है यहां--

यहां पर मुझे कुछ पानी भरे दिखाई दे रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पर पैर पौधे दिखाई दे रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगी दे रहे हैं।

यहां पर बहुत अच्छा कुछ बनाया हुआ है जो नीचे टाइल गई है जो की देखने में बहुत अच्छी लग रही है ।

और यहां पर कुछ सफेद कलर का पेंट भी किया हुआ है देखने बहोत अच्छा लग रहा है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसे--

यहां पर एक मारुति कार भी दिखाई दे रही है और यहां पर एक दिखाई दे रहा है जो देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा आप लोग काम भी किया हुआ है और यहां पर सभी प्रकार के आदमी आते हैं।

यहां पर मुझको एक पेंसिल की दिखाई दुकान दिखाई दे रही है जिस पर कुछ बहुत सारे पेंसिल रबड़ रखे हुए हैं।

और चारों तरफ जो की बहुत अच्छी भी लगी हुई है चारों तरफ सफेद कलर की पुट्टी भी की हुई है जो देखने में बहुत अच्छी लग --

यहां पर कुछ भी दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ बहुत अच्छा यहां पर भी दिखाई दे रहा है।

जो देखने बहोत अच्छी लग रही है और उसकी पिछले साइड में एक यहां पर गोदाम बना हुआ है जो कि इसमें से कुछ व्यक्ति बाहर आ रहे हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

जिससे कि शाम के टाइम यहां पर बजाने का भी काम होता है और यहां पर फ्री में बजाना प्रोग्राम चलता है यहां पर सभी लोग आते हैं और गेम बजवा के फ्री में चले जाते हैं।

और यहां पर सफेद कलर के कुछ पुट्टी भी लगाई हुई है जो देखने बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छा यहां पर--

टाईल भी लगी हुई जोकि ब्लैक कलर की टाईल दिखाई दे रही है जो देखने में बहुत अच्छी--

बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है घास फूस दिखाई दे रही है और चारों तरफ टीले दिखाई दे रहे है जो देखने में--

और यहां पर चारों तरफ बॉउंड्री की हुई है जो देखने में बहोत अच्छी लग रही है और यहां कुछ लोग काम भी करते हैं।

और एक कुर्सी है जो देखने में बहोत अच्छा लग रही है और उसके चारों तरफ ए_सी लगी हुई है जो कि सफेद कलर की की ए_सी है।

और यहां पर कुछ बोलने का माइक भी लगाया हुआ है जोकि ब्लूटूथ कनेक्ट होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति बोलता है तो चारों सब की आवाज आती है बहोत अच्छी तरीके से आवाज भी आती है।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

स्लीपर कोस भी है यानी कि यहां पर ऊपर एक स्लीपर को सोने का भी--

और यहां पर बराबर में एक और बस खड़ी हुई है जो कि एक रेड कलर की बस खड़ी हुई है जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन भी की हुई है सामने से एक व्यक्ति जा--

की जो होती है जो भी कार आती है यहां पर मॉडिफाई करने के लिए आती है यहां पर बहुत अच्छी मॉडिफाई करते हैं ये लोग कार को बहुत अच्छी तरीके से शानदार तरीके से बनाया भी जाता है।

और यहां पर पेड़ पौधे भी खड़े हुए बहुत अच्छे यहां पर लंबे-लंबे पेड़ खड़े हुए हैं और एक पीला कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम भी दिया हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहां पर मुझको कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जो देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं जहां पर डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई है।

और यहां पर बहुत अच्छे डेकोरेशन के साथ-साथ यहां पर बहुत अच्छा पैसा भी लगाया हुआ है जो देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे यहां पर डेकोरेशन भी की हुई है।